देखने में भी अच्छा लगता है।

एकठो मशीन है एकठो मशीन है कितना अच्छा मकान है।

कितना अच्छा है देखने में कितना सारा है बहुत सारा है देखने में लगता है बहुत सारा --

बच्चा सब पढ़ाई करता हैं सर लोग हैं कितना बच्चा सब हैं ।